भीड़ बना रखी है तीन जगह हैं और शटर ऊपर खुला हुआ है। सफ़ेद कलर की दीवार है।

बिल्डिंग है और बगल में चैनल गेट है और एक और बंदा है जिसके अअ हाथ में बैग --

और एक काफी सारी वेह्कलस वगेरा खड़ी हैं जिसमे एक पीला वाला बन्दा अंदर खड़ा है ओर कुछ चल के जा रहे हैं और कुछ अ पेड़ भी लगे हुए हैं--

तथा काम लग रहा है जिसमे वो पूरा घर बनाये हैं या पूरी बिल्डिंग बना रहे हैं जिसमे सब लोग ऊपर फ्लोर में खड़े हुए हैं जिसमे एक ने बरमूडा अ पहना है ब्राउन कलर का और अ लाल कलर की शॉल लपेट रखी है। एक आगे --

पत्तिया दिख रही है एक लाल कलर की बिल्डिंग है । एक टीचर खड़ी है पिंक और व्हाइट साड़ी पहेन कर सब लोग जमीन पर बैठ कर आपना क्राफ्ट का समान बना रहे है ।

ये एक एरिया है जिसमें टिन के शेट के निचे काफी सारी लेडिज और अ मेन खड़े हुए हैं।

पार्लर का सीन है जिसमें ट्रांसपेरेंट शीशा है अंदर काफी कुर्सियां हैं।

एक बंदा है जो इ रिक्शा पुराने जमाने के जो रिक्शे चलते थे ।